और यहाँ पे कुछ बाउंड्री भी उठी हुई दिखाई दे रही है औ --

औऱ यहाँ पे रोड भी दिखाई दे रहा पहाड़ी दिखाई दे रही हैं और --

जिसका कलर व्हाइट और पिंक है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

बस ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक मस्जिद बनी हुई दिखाई दे रही है।

और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

उसमें पानी भरा हुआ है।

की दीवाल का कलर --

एक पानी की टंकी भी बनी हुई है और --

कुछ बोटल यहीं रखी हुई दिखाई दे रही। यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं। यहां पे बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

खाई दे रही है।

चद्दर शेड दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है। यहां पर ब्रेंच भी रखी हुई --